और इसके अगल-बगल में बैलून वगैरा से सजाया गया है बैलून भी काफी अच्छा लग रहा है बैलून भी तीन रंगा का बैलून है जो तिरंगे में होता है वैसे बैलून और बैलून का पेंट कलर भी अच्छा लग‌ रहा है देखने में।

लगा हुआ है तिरंगा छब्बीस जनवरी का और यहां पर एक सरस्वती माता बना हुआ है बहुत लोग हैं जो अपने-अपने रूप में बने हुए हैं और काफी ब अच्छे-अच्छे लोग यह टीचर लोग भी बैठे हुए हैं।

और गांव में बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे इस पानी में मछलियाँ भी पाया जाता है बड़ी-बड़ी बहुत सारे दूर-दूर से पछि आते है डैम में और यहाँ पे बहुत एन्जॉय लेते है मजे करते है नाव में बैठने पे मज़ा आता है यहाँ --